यहां पे बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है जो ईंटों की हैं।

यहां पे एक मेज पड़ी है जिसपे काले रंग की लैंप रखी दिखाई दे रही है।

कुर्सियों के आगे गोलमेज पड़ी हुई है जिसपे माइक रखी दिखाई दे रही है।

यंहा पे दुकान है जहाँ पे बहोत सारा सामान टंगा हुआ है।

एक काली और एक नीली सफेद रंग की है। इसपे हेलमेट भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक तख्त पड़ा हुआ है जिसपे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पीछे एक लोटा रखा हुआ है।

माँ ललतेश्वरी एंटरप्राइजेज लिखा हुआ है पोस्टर पे।